और हमें यहां पर कुछ ट्रक वगैरे भी दिख रहे हैं।

क्यू जीरो थ्री फाइव थ्री ऐसा लिखा हुआ--

दो बड़ी-बड़ी चेयर्स दिख रही है।

हमे काफी सारी गाड़ियां दिख रहीं हैं टेबल्स वगैरह दिख रहे हैं काफी प्यारी लाइटिंग्स लगाई हुई हैं।

फ्रिज वगैरह लगाई हुई है एक गाड़ी दिख रही है।

यहां पर हमें एक बहोत बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।